व्हाइट कलर का ये रूम है यहां एक ब्लैक कलर का एक गेट भी लग रहा है उसमे लॉक लग रहा है और नीचे एक टेबल सा लग रहा है।

पे तीन गर्ल्स डांस कर रही है एक ने येलो और ग्रीन कलर का पहन रखा है एक ने ब्लू और पिंक कलर का कपड़े पहन रखे है एक --

ब्लैक कलर के फर्श पे कुछ दिख नहीं रहा है और यहां पे ये टाइल्स लगी हुई हैं बिल्डिंग में थोड़ी सी विंडो भी दिख रही है मुझे।

और जो लोग गा रहे हैं व्हाइट कलर के सब कपड़े पहने हैं बस एक जो है वो ऑरेंज कलर के पगड़ी पहने हुए और बाकी जो है वो व्हाइट कलर की कैप पहने हुए हैं।

के हाथ में छोटा-सा बच्चा है और व्हाइट कलर की मुझे ये चेयर भी दिख रही है यहां पर और नीचे वो भूरा आसमान भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा----

यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए हैं जिनसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं की और ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है पीछे वॉच लगी हुई है।

बहुत ब और र है और उसके बगल में एक वाइट कलर का भी बिल्डिंग्स दिख रही है मुझे और पेड़ दिख रहा हैं। फ्लॉवर का यहाँ पर--